खम्भे दिखाई दे रहे हैं पिंक कलर दिखाई दे रहा हैंआसमान में स्काई ब्लू ग्रे और पर्पल ग्रे और ग्रीन कलर दिखाई दे रहा हैं और भी बहोत कुछ दिखाई दे रहा हैं।

लोग दिखाई दे रहे यहाँ पे एक बिल्डिंग येलो स्काई ब्लू रेड पिंक कलर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है रामा कलर दिखाई दे रहा हैऔर भी कुछ कलर्स दिखाई दे रहे है।

दीवाल पर ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा हैं शटर पे ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ जोकी येलो कलर का हैं जिसमे रेड कलर भी हैं और भी बहोत सारा सामान दिखाई दे रहा हैं।

बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है बिजली के खंभे दिखाई दे रहे है एक दीवार पे ग्रीन ब्राउन कलर दिखिया दे रहा है ऑरेंज कलर दिखिया दे रहा है जमुनी कलर दिखिया दे रहा है ।

दिखाई दे रहा है यहाँ पे कोई हेल्लो कलर ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है स्काई ब्लू कलर दिखाई दे रहा है।

एक होटल दिखाई दे रही है और भी बहुत सारा समान दिखाई दे रहा हैं पर्पल कलर दिखाई दे रहा है पिंक कलर दिखाई दे रहा है स्काई ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर दिखा --

अंधेरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स दिखाई दे रही है रेड कलर दिखाई दे रहा है येलो कलर दिखाई दे रहा है बहुत सारा साउंड दिखाई दे रहा है बहुत सारे फ्रेम्स दिखाई दे रहे है ए_सी दिखाई दे रही है यहाँ पर व्यक्ति दिखाई दे रहे है--